और यहाँ पर बहुत सरे लोग आते-जाते मेले में नजर आ रहे हैं।

दिख रहे हैं और बहुत सारी संख्या मे यहाँ पर हमें स्टूडेंट दिख रहे हैं | एक व्यक्ति जा रहा है जिसके हाथ मे कुछ पुस्तक रखे हुए है |

यहाँ पर हम देख सकते हैं की यहाँ पर एक मेला लगा हुआ है और मेला मे बहुत सारे प्रकार के जो हैं यहाँ पर --

यहाँ पर हम दिख रहा है की यहाँ पर एक छोटा सा तालाब नजर आ रहा है जिस तालाब के ऊपर हरी-हरी घास --

और लाइट्स लगाई हुई है और इस मंदिर मे महावीर भगवान की मूर्ति जो है रखी हुई है।

और शॉप के आगे कुछ स्टील की अलमारियाँ रखी हुई हैं एक व्यक्ती चेयर पर बैठा हुआ है और शॉप के ऊपर जो है।

लगे हुए हैं और थोड़ी बहुत चट्टानें टाइप दिख रही है।

यहाँ पर हमे एक ए.टी.एम. दिख रहा है | इस ए.टी.एम. के अंदर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है | मशीन के पास मै ए.टी.एम. के पास में ।

शॉप के पास में खड़ा हुआ है दो व्यक्ति शॉप के पास में बैठे हुए हैं।

यहाँ पर हमे एक शॉप दिख रही है जिस शॉप के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है | उस बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है अमिता बुक स्टेशनरी |

चारो तरफ मट शादी की जो मटकियां होती है वो रखा गया है और उसके आस-पास मंडप सजाया गया है फूलो से।

ये बहुत सारा सामान जो है जमा कर रखा हुआ है।

जैसा की मे देख रहे हैं की यहां पर भगवान की मूर्ति भगवान की तस्वीर रखी हुई है | जिसमे की माता जी लक्मी जी गणेश जी और बाला जी की --

वाहन लेकर के पेट्रोल भराने के लिए खड़े हुए है और ये जो पेट्रोल पंप बना हुआ है --

और दाहिने हाथ की तरफ हमे यहां पर पेड़ लगे हुए नजर आ रहे।

और ऊपर लिखा है विनोद।